यहाँ एक बहुत बड़ा मैदान है जिसके अंदर बहुत सारे लोग खड़े हुए है लोगों ने विभिन प्रकार के रंगो के वस्त्र पहने रखे है वही पर बहुत सारे पड़े पौधे भी दिखाई दे रहे--